जहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल --

यहाँ पर टिर्री भी कहा जाता है इसके --

जैसे हमें कहीं जाना हो तो हम --